छडा हुआ है और लोहा का जो गेट लगा हुआ है और आगे में तीन प्रकार के पेड़-पोधे लगे हुए हैं।

गिद्धौर का ये बाउंड्री है जो पीछे प्रति जमीन पड़ा हुआ है और आगे की ओर ढलाई किया हुआ है।